घास फूस और फूल लगे दिखाई दे रहे हैं और यहां पे झोपड़ी है।

हमें फिलहाल काउंटर पे इसके ओनर दिखाई दे रहे हैं। ज्वेलरी शॉप का नाम अलंकार ज्वेलर्स है।

ये कुछ फ्रिज रखे हुए हैं लग्जरी सोफे हैं मैट्रेस हैं।

उसके अलावा ये किराना स्टोर भी हो सकता है क्योंकि हमें यहां पर एवर रेडी के शेल दिखाई दे रहे हैं।

और कॉस्मेटिक शॉप है किराना शॉप के हिसाब से यहाँ पे काफी सामान रखा हुआ है जैसे परफ्यूम डियो --

तो शायद हम कह सकते कि मनु देवी कोई बड़ी महान हस्ती होंगी फ्रीडम फाइटर हो--